यख मा जी हरयां रंग कु एक पाइप भी छ रख्युं यख मा जी दुई आदमी छन यख मा जी कई सारी मेज कुर्सी छन लगीं दिवार मा जी एक बोर्ड छ लग्युं यख मा जी पंखा छ लग्युं खिड़की --

यख मा जी दुई जे.सी.बी छन यूं पर पीलू रंग छ हूयों यख मा जी यू कुछ ढ़ूंगा छन सार लग्यां यख मा जी कई सारा लोग छन।

यी एक रोड छ बणन लगीं तारकोल बट्टी गिरजी क बणन लगीं।